सारा चीज है और यहाँ पे साइड में एक फ्रीज रखा हुआ है जिसमे ठंडा भी --

फिर सभी लोग आपस में मिल के बाते कर रहे है अभी ।